बहोत सारे आदमी दुकान वालो के लंबे फोटो लग रही है की लग रही है ज्वेलरी की शॉप है।

ये वो अ ऑफिस है जिसमें से सफेद कलर मेज है दो एक कुर्सी है एक स्टूल टाइप में कुर्सी है बिल्कुल नई है जिसकी पैकिंग भी नहीं खुली--

यहाँ पर बहोत सारे बच्चे बैठे हैं ये बच्चे अपने--

एक अह टीन वगैरह घेर के एक अह बीम खड़े करके लोहे के एक छायादार वो बना रखा जिसमें टायर पर--

रेड पिंक येलो बेबी पिंक ब्लैक साड़ी पैकिंग में लाइट लग रही है काटरा है लाइट है।

स्कूल की बिल्डिंग है यहां पे बहुत सारे अह रुम वगैरह की खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

ब्लू कलर का एक गेट है। आदमी ने ब्लैक कलर के लते पहन रखे हैं व्हाइट कलर के एक लेडीज की जिसने साड़ी बांध --

पोल बन रहा घर वगैरह दिखाई दे रहे चारों तरफ पेड़ हैं रेड कलर की है सोलर प्लेट लग रही है खंभे हैं।

ये एक डांस एकेडमी जापे दो मेडल टांग रहे हैं यहां पर बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है टीचर एल्युमिनियम के --